यहाँ पर बहोत सारी सीढ़िया बनाई गई है यह कोई बहुत ही अच्छा टावर है इसलिए यहाँ पर बहुत सारी सीढ़िया बनाई गई है यहाँ पर ऊपर चढ़ने से बहुत अच्छा नजारा दिखता है।

--कुछ काम नहीं हुआ है तो इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है यह मंदिर बहुत पुराना है इसलिए ये ऐसा लग रहा है।